और इसके अंदर बहोत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम दिख रहे हैं जैसे कि फ्रीज हो गई और हो गए और शोरूम के पास बुलेट खड़ी है स्कूटी खड़ी है और एक--

किनारे पर खड़ी है और उसके आस पास थोड़ा बहोत पानी नजर आ रहा है जोकि थोड़ा गंदा लग रहा है।

यहां पर एक निकास लिखा हुआ है वहां से एक व्यक्ति अंदर जा रहा है जिसने वाइट ब्लैक कलर की हॉफ जैकेट --

ब्लू कलर की पेंट पहन रखी है और उससे बाहर सीढ़ियां है और डस्टबिन के डब्बे पड़े हैं।

यहां पे ब्लॉक्स लग रखे हैं जो कि व्हाइट और थोड़े हलके से ब्लू ग्रे कलर के हैं।

बहुत सारे यहां गड्ढे कर रखे हैं छोटे छोटे मुझे लग रहा है कि इधर काम चल रहा है इधर एक व्यक्ति खड़ा है।

यहां पे तीन शटर लगे हैं और यहां ब्लू कलर की टेबले है और कुर्सियां लग रखी है यहां बहुत टेबले लग रखी हैं।

और उसके पास एक मोटरसाइकिल जा रही है जिसने अंकल ने एक हेलमेट पहन रखा है और दोपहर का समय --

और एक रेड कलर की बिल्डिंग है और उससे जा बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उसके पास ही एक व्हाइट कलर की बिल्डिंग है जो मुझे एक सोसाइटी --

और पेड़ के पास बहुत सारी तारें हैं।

और ऊपर एल शेप में चार शेप बनाई हुई है उसके अंदर सी टाइप शेप में एक येलो कलर उसके अंदर भी येलो कलर शेप में व्यक्ति --

अलग अलग तरह की कपड़े पहन रखे हैं थोड़े बहुत बच्चे हैं कोई गोदों में हैं तो कोई खड़े हैं।

ऊपर यहां पे कोई खेलने वाला लग रहा नहीं है और ये विकेट ब्राउन कलर का है उसके जस्ट सामने एक और विकेट लग रखा है।

और पंखे है इधर चार पांच पंखे नजर आ रहे है और सामने एक खिड़की से रोशनी आ रही है उसके ऊपर ए_सी लग रखा --

और इधर एक गाड़ी है टैक्सी भी खड़ी है।